यह पेट्रोल पंप है।

पेट्रोल मिलता है।

यह एक पंडाल का फोटो दिखाया जा रहा है।

टावर का फ़ोटो दिखाया गया है ।

यह आयरन कोई एक आदमी अपने शर्ट को आयरन कर रहे हैं।

यह आयरन करने से हमारे सर --

पेशेंट को इलाज किया जाता है और यह हॉस्पिटल बहुत बड़ा है।

है यहाँ बहुत आदमी आते हैं।

यह एक केनरा बैंक का फोटो दिखाया गया है यह केनरा बैंक में --